साइड में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और कांच से बनाया हुआ घोड़ा।

मुझे ये पिक्चर में दो घर दिखाई दे रहे हैं।

ये पिक्चर एक फूल नर्सरी का है।

यह पिक्चर में मुझे दिखाई दे रही है बहुत सारे टाइप का लाइट बल्बस फोटो फ्रेम्सस फैन ।

फूल का कलर अलग अलग है व्हाइट है पिंक है येलो है।

ये पिक्चर एक स्वीट रेस्टोरेंट का है और इस पिक्चर में मुझे दिखाई दे रही है।

बहुत सारे लोग चेयर्स में बैठ के और सभी अन्य लोग का चेहरा ब्लर है।

ये पिक्चर एक स्टेट बैंक ए_टी_एम का है।

पार्क करने के लिए एक लम्बा बड़ा सा ब्रिज है।

और सभी लोग का चेहरा जो है ब्लर है।

मुझे ये पिक्चर में एक बहोत बड़ा दो फ्लोर का घर दिख रहा है उसमें बहुत सारी खिड़की है घर का कलर है ग्रीन और खिड़की फ्रेम का कलर है ब्लू ।

फ्लोर जो है टाइल से बनाया हुआ है।